सैलून है इस सैलून में दो पंखा लगा है और चेयर भी लगा है और यहाँ पे बाल कटिंग होता है दाढ़ी शेविंग होता है बॉडी मसाज होता है इसी प्रकार का बहुत सारा काम किया जाता है ।

यह नदी के ऊपर एक पूल भी बनाया गया है। यह नदी बहुत ही गहरा नदी है। यह नदी में बहुत पानी बहता है। यह देखने में सुंदर लगता है।

यह एक घर है यह घर के पास एक छोटा सा पार्क बनाया गया है यह छोटा सा एक गार्डन है ये मिनी गार्डन है यहाँ पर बहुत से फूल लगाये गये हैं और यहाँ पर छोटे-छोटे पेड़ भी लगाये गये हैं।